ज्यादा सुंदर प्रतीत हो रहा है और ये काफी मनमोहक लग रहा है और--

इसके अलावा बच्चों के लिए बहोत सारी--

और साथ में एक अलेक्ट्रॉनिक तराजू है जिसमें समान को तौला जाता है।

और जो कंबोर्ड हैं जोकि वेस्टर्न कंबोर्ड हैं।

ये एक फोटो कॉपी की दुकान है जिसका नाम है राहुल कंप्यूटर्स एंड फोटो कॉपी सेंटर ।

और इनका कोच भी वहां पर उपलब्ध है।